ये रात का दृश्य है लाइटे जली हुई है पंखे लगे हुए है अलग तरह के --

एक रोडे निकली हुई है आस-पास से बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे भी है सा आस-पास में छोटे-छोटे पेड़ पोधै भी है हरा-भरा सा है एक दम।

ये एक दुकान है केलकुलेटर पड़ा है टेबल लगी हुई है पुस्तक पड़े है पीछे अलग अलग तरीके छ सामान पड़ा है जैसे पेन वगैरह जैसे पुस्तकों की दुकान है।

टाइल लगी हुई है आसपास बहोत सारा फर्नीचर हो रखा है और बहोत सारा डेकोरेशन भी कर रखा है बहोत सारा आदमी भी खड़े हैं जैसे कि ओपनिंग की तरह लग रहा है।

यह एक दिन का दृश्य आसपास बहुत सारे झाड़ियां ही है और पौधे भी है बड़े बड़े भाखर है दूर दूर तक भाखर ही भाखर दिखाई दे रहे हैं।

यह एक लगा हुआ है सीलिंग लगी हुई है ऊपर पंखे चल रहे हैं लाइटें जली हुई है ऐ_सी लगी हुई है।

और कई सारे डॉक्टर भी खड़े हैं कोई सा बहोत सारे आदमी भी खड़े हैं कुछ लोग सम्मानित करर कर रहे हैं और अलग अलग तरह के लैपटॉप भी पड़े हैं कंप्यूटर भी पड़े हैं।

सारे कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है एक दुकान के आगे कांच का गेट लगा हुआ है।

ये एक वीरा सेवा सदन है इसमें ऊपर एक गेट बनाया हुआ है करके एक रूम सिक्योरिटी रूम बनाया हुआ है बाहर एक --

ये एक दिन का समय है जैसे कोई ग्राउंड की तरह लग रहा है या मैरिज पार्टी लग रही है।